आदमी है आदमी न अअ स्नान कर रहा है।

देखने में अच्छा लग रहा है। कंप्यूटर चला रहा है बड़ा अम्म बड़ा --

आसमान नीला है हम्म पानी पीला दिखाई पड़ रहा है।

बस उम्म सारे शैम्पू भी है ऐं गोल्ड --

उम्म देखो पानी बढ़ रहा है बहुत अच्छा --

बहुत बड़ा पार्क है पार्क में बच्चे खेल रहे हैं।